और हमे यहा पर पुजा का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहा पर एक पंडित जो पुजा कर रहा है।

हमें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है एक पोस्ट ऑफिस मे जीला वाले गेट लगे हुए है और इसके साइड मे एक शटर भी लगा हुआ हैं।

इस कार के गेट खुले हुए है और यहा पर कुच्छ व्यक्ति भी खड़े हुए है इस सफ़ेद कार की कार है।